और दुकान के बाहर एक मोटर साइकिल खड़ी है।

उसे पे अंसारी ऑटो एसेसरीज एंड मशीनरी लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक समुन्द्र दिखाई दे रहा है समुन्द्र में पानी बहुत ही कम है।

यह एक सैलून का फोटो है।

यह एक पार्क का फोटो है इस पार्क में झूले लगे हुए हैं झूले पे --

और एक लाल रंग की डस्टबिन भी रखी हुई है।

एक लड़का खड़े हो के मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है।

और एक लड़का बैठ के कर रहा है लाइट भी लगी हुई है।

जो की लाल रंग का है और घर जैसा बना हुआ है।

सब योगा कर रहे हैं और बहुत सारा पेड़ भी बड़ा-बड़ा --